यहां पे एक मंदिर दिखाई दे रहा है यहां पे बहोत से लोग खड़े हुए है।

यहां पे बहुत से पंछी हैं यहां पे एक टब रखा है जो गुलाबी रंग का है।

आसपास लाइटें जल रही हैं। यहां पे नीले रंग की एक पट्टी है।

यहां पे बहुत सा कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है मिट्टी है।

यहां पे एक सिंक लगी हुई है पोस्टर लगा हुआ है।

यहां पे एक जिला सेवा योजना कार्यालय लखीमपुर है।

बिल्डिंग पीले रंग की दिखाई दे रही है यहां पे एक पेड़ है जो काफी बड़ा है।

यहां पे एक स्कैनर रखा हुआ है पास में अलमारी है।

यहां पे बहोत सी कुर्सियां पड़ी है जो लाल रंग की है बहोत से गुब्बाड़े लगे हुए हैं।

यहां पे एक टोकरी रखी हुई है कुछ औरतें हाथ जोड़कर बैठी हैं।

यहां पर माउस रखा हुआ है एक आदमी खड़ा हुआ है।

आसपास घर बने हुए हैं। कुछ गमले टंगे हुए है।

यहां पे कुछ आदमी मिट्टी का ले बना रहे हैं एक आदमी खड़ा हुआ है।

सामने कुछ आदमी खड़े हुए हैं मशीन का रंग पीला है।

यहां पे एक भगोना भी रखा हुआ है यहां पे एक पेड़ है जो काफी बड़ा है।

यहां पे हरा मैदान है जिसपे छोटी छोटी घास उगी हुई है।

बिल्डिंग के ऊपर तिरंगा लहरा रहा है आसमान नीले रंग का है।

यह मशीन लोहे की बनी हुई है यहां पे एक रोड भी है।

सफेद रंग की कुर्सियां पड़ी हुई है यहां पे बहुत सी लाइट जल रही है।

यह एक चर्च है यहां पे चर्च का सिंबल बना हुआ है।